तुमको ये पता है लेकिन एक निचे थाली में है थाली ठो में रखा हुआ है।

तीन आदमी है जो कि वो तीनो आदमी एक्सरसाइज कर रहा है।

जंगल सब है और क्या बोलता है इसको रे बहुत अच्छा है लेकिन देकने में भी बहुत सूंदर है और पेर सब लम्बा-लम्बा है।

ये मतलब शादी हो रहा है किसी का बहुत अच्छा लग रहा है।

बहुत अच्छा लग रहा है देखने में पार्ट टू बहुत सीन तो गजब है।

एक बल्ब भी है जो कि एक बल्ब में बहोत अच्छा लग रहा है।

और देखने में भी बहुत अच्छा लगा ऑटो और बहुत भीड़ है आगे।